और सामने एक घास भी हैं।

और बडासा पेड़ है और खुला सामान है खंबा दिख रहा है बड़ा सा वायर है।

और एक मोटर साइकिल अ‍ॅक्टिव्हा दिख रहा है। सामने काउंटर दिख रहा है और कांच का खिड़की है।

इस तस्वीर फटाका का दुकान हैं जिसमे अनारदाना दिख रहा हैं और टाइगर दिख रहा हैं।

और एक पेड़ भी दिख रहा है और अंदर कुछ गाडीभी खड़ा हुआ है और अंदर एक घर भी हैइसमे बहुत सारा खिडकी भी है।

लाल कलर का चटाई भी बिछा हुआ हैं और एक बैनर भी हैं पंखा भी हैं।

और लाइट भी लगा हुआ हैं ए_सी भी हैं पंखा भी हैं।

इस तस्वीर एक गार्डन का हैं। इसमें बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ हैं और सामने बड़ा सा खबा हैं।